कुछ लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं और राइट साइड में एक कार खड़ी है।

और यहां बाजू में कुछ बोड भी लगा है बोड में कुछ ली--

और यहां फूल पौधों के सामने दो घर जैसे बने हुए हैं और यहां--

ये एक फैक्ट्री के सामने का हिस्सा है जहां की इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

और इस कमरे से बाहर--

और दो पंखे सामने की ओर चल रहा हैं तीन चार लाइटें भी लगी हुई हैं सामने खिड़की भी नजर आ रहा--

गेहूं चावल सामने डब्बों में टॉफी वगैरह भी दिख रही है।

ये एक स्टोर नजर आ रहा है जहां की--

एक कमरे में कई लोग यहां खड़े हैं और सामने टी_वी चल रही है।

और काफी बड़ा रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

मकान में तीन चार पंखे भी लगे हुए हैं।